इस इमेज में मुझे एक घर दिखाई दे रहा है घर के बाहर एक बोर्ड लगा है वो दिखाई दे रहा है।

यहाँ मुझे एक शॉप दिखाई दे रही है और शॉप में कुछ प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं और प्रोडक्ट का नाम दिखाई दे रहा है लेकमा ।

इस इमेज मे मुजे हरा भरा खेत दिखाई दे रहा है।

इस इमेज मे मुझे एक मैदान सा दिखाई दे रहा है वहा पर कुछ बच्चे है जोकी दिखाई दे रहे है मुझे खेलते हुए दिखाई दे रहे है।

और मुझे वहाँ छत पे पंखा दिखाई दे रहा है। मुझे पर्दे दिखाई दे रहे हैं। जिनका कलर है व्हाइट और पिंक ।

यहा मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे है कुछ लेडिस ए दिखाई दे रही है उसके अलावा यहा पटाके जलते हुए दिखाई दे रही है।

मशीनो के पास और भी बहोत सामान है वो भी दिखाई दे रहे हैं।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

पीछे एक दीवार दिख रही है मुझे जो की दीवार का पेंट प्रिंट हुआ है और दो चेयर रखी हैं वो चेयर दिखाई दे रही हैं।

तार है जो तार दिखाई दे रहे है कुछ आसपास मे कुछ घर बने हुए है ओह घर दिखाई दे रहे है इनके हाथो मे लकड़िया है।

इस इमेज में मुझे एक बड़ा-सा मैदान दिख रहा हैं। मैदान के आस-पास मुझे बोहोत सारे पेड़ --